हेलो गाइस आप देख सकते है इसमें सर मैम है और इसमें अ ब्रिज बना हुआ है डैम .

हैलो गाइज़ आप देख सकते हैं इसमे कितनी प्यारी सेल्फी ली गई हैं साइड मे के पीछे का बैकग्राउंड हैं हार्ट शैप मे बने हुए हैं पीछे जो कर्टन लगे हैं काफी ब्लर लगे हुए हैं।